हुई है और दोनों तरफ बहोत बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। छोटे छोटे गमले भी रखे हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे हैं। दृश्य बहोत सुंदर लग --

इस दृश्य मे हम देख पा रहे एक ये गुरुद्वारा बना हुआ जिसमें की देखिए ऊपर की तरफ गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह --

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक कार गराज है। यहाँ पर देखिए एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई जी --

इस दृश्य में हम देख पा रहे यहाँ पर एक बोहोत बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है और यहां पर देखिए बाहर की तरफ हरी --

यहां पर सामने की तरफ एक कार खड़ी हुई है।

त्रिपाल बिछा हुआ है जिसपे बहोत सारी मछलियां रखी हुई है। यहां पर सामने की तरफ --

इसमे हम देख पा रहे हैं। यहां पर किसी रेस्टोरेंट क दृश्य है। जहां पर देखिए बोहोत सारी मेजे और बोहोत सारी कुर्सि --

इस दृश्य में हम देख पा रहे है यहाँ पर ये दुकाने बनी हुई है जहां पर देखिये --

दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ से एक पेड़ भी दिखाई दे रहा --

इस दृश्य में हम देख पा रहे ये एक बोहोत बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जहां पर देखिए बोहोत सारी अलमारियां बनी हुई है।

यहां पर एक बिजली का खंभा लगा है जिसमें कि बहोत सारे तार निकले हुए हैं।

केंद्र काँठ मुरादाबाद लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ दिखाई रहा है।

इस दृश्य मे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सामने एक जेसबी मशीन खड़ी हुई है जो की खुदाई कर रही है। जहाँ पर बहुत सारे म --

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहां पर ये देखिए दुकान के अंदर का दृश्य है जिसमें कि बहोत सारा सामानस टंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां पर देखिए एक --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

इस दृश्य मे हम देख पा रहे है यहाँ पर ये मकान बन रहा है जहाँ पर देखिये ये पड़ती हुई दिख रही है जिसमे कि लोहे का जाल बना हुआ है औ --

इस दृश्य में हम देख पा रहे है। एक दुकान के अंदर का दृश्य है। देखिये यहां पर बोहोत सारी अलमारियां बनी हैं। जिसमें कि बोहोत सारी पुस्तक रखी--

और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक काउन्टर रखा हुआ है। अंदर की तरफ भी कुर्सी रखी जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।